ये चित्र मा हम त एक मूर्ति दिखेण लगीं जू दिखेण से हनुमान भगवान की मूर्ति लगण लगीं जूं पर कुछ प्लास्टिक की माला पनाई कुछ वन फूलों की माला पनाई।

ये चित्र मा हम त एक बड़ी जगह छ दिखेण लगीं जखि मा हम त एक डोकरामएक इमारत दिखेण लगीं जैका ओर पोर जाली लगीं।

ये चित्र मा हम त एक बड़ी दुकान दिखेण लगीं जैका भीतर हम त कुछ जगह दिखेणी जमणा कुछ सब्जियां रखीं।

अर वेका अगाडी फणी कुछ ताथ पट्टी अर एक बार टी दिखेणी फंडे बिटी हमथे एक दुकान भी दिखेण लगी जमणा कुछ जूस का डबलान दिखेण लग्या।

ये चित्र मा हमते एक बड़ी ईमारत दिखेण लगीं ये दिखेण से ये खण्डर लगण लग्युं यु ढुंगा की और माटा की च बणी भित्तर बणाे हमते कुछ सीडी और अँध्यारु कर दिख्याण लग्युं भैर भीटे हमते कुछ झाड़ी काईन दिख्येण लगीं एक लुक-लुक दिख्येण लग्युं हमते।

ओर पोर बाढ़ भी छ होईं जु जाली की बाढ़ छा यख फणा अगाड़ी फणा हम ते कुछ जानवर भी छन दिखेण लग्यां जु दिखेण से हिरन छन लगण लग्यां वफणी एक पाणी की होदी भी छ बणी।